यह एक कान नजर आ रही है जो की लार्जेस्ट की ऑफिस है यह दुकान है।

यह भी एक आइ.टी.आई कॉलेज का फोटो है जो सुरेन्द्रकुमार सिंह प्राइवेट आइ.टी.आई का बिल्डिंग है।

यह एक हॉस्पिटल है जो होम्योपैथी हॉस्पिटल है यह चाकन के नजदीक है यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे लोगों को फायदा किया है लकवा पोलियो वाला को।

बहुत अच्छा दृश्य है। यहाँ सिसुओ को अच्छा तरह से देखा जाता।

ये क्लिनिक रोगियों के लिए अच्छा सी है प्रतमिक उपचार होते--

यह एक विद्यालय का बिल्डिंग है विद्यालय का बिल्डिंग नहीं यह एक डॉक्टर का बिल्डिंग है जो राकेश कुमार का है।

यहाँ पे कुछ ओर ढ़ोने मे काम मद्दत करता हे। काम पूँजी में चलता है।